यहां एक रेस्टोरेंट है जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है यहां कुर्सियां है।

फुल है जो लाल कलर का है और वो बोहोत ही खूबसूरत है।

और कुछ लोग उसमे बेठे हुए है और एक आदमी उसमे जाने की कोशिश कर रहा है।

बोहोत ही तार लगी हुई है।

आप इसका लुत्फ़ उठा सकते और एक खा--

और एक लकड़ी सी पड़ी हुई है उस खड्डे में--

ये एक ऑफिस लाग रहा है।

एक ओरत बेठे है जो अपना काम कर रही है और दो आदमी--

ये बहोत ही सुंदर है यहां--

चकम रही लाइटे है और बाहर इधर तेज इसमें एक घंटी लटकी हुई है।

और इस दूकान का नाम वेलु एंड वेरायटी है और इस्पे वि टू वि लिखा हुआ है।

और मिरर है और यह वजन करने का--

यहा एक गार्डन में नली पड़ी हुई है।

जो दीवाल है वो ब्राउन कलर की है बहुत से लोग यहां पे बैठे हुए हैं।

ये सामान देख रहे है और कुछ लोग ये खरीद रहे है।

और इसका मालिक बिल बना रहा है।

और कुछ लोग ऐरोपल्म ऐरोप्लेन मे जाने की कोशिश कर रहे है ।

यहाँ एक मदर एंड चाइल्ड होस्पिटल है उसके बाहर दो गाडिया खड़ी हुई है एक गाडी फॉर विलर है।

ये एक रूम है ऐ_सी वाला जिसमे ऐ_सी है ।

एक टेबल और एक खुर्सी है और दो पेड़ है जिससे हमें--

मस्त और लजीज कुरकुरे है जिसे हम यहाँ--

लक रहा है एक छोटे से बच्चे का बर्थडे है।

एक होटल है जिस होटल में बहोत से कमरे है उन कमरों का कलर ब्लू है और एक आदमी उस--

देखने में बोहोत ही सुन्दर लग रहा है।

बाद में एक ब्राउन कलर की बिल्डिंग भी है।

और यहा एक ओरत उसे खरीद रही है।

जिसके बाहर दो आदमी है और यहा--

इस पे लिखा हुआ है ईमर्जन्सी ओपन एंट्री प्रवेश ।

उसका कलर सफेद और काला है वो बोहोत ही शानदार तरीके से बेठा हुआ है।

ए-एक मस्जिद जेसी लग रही है।

यहाँ एक गाडी है और उसे धोने वाला दो आदमी--

दो गाडी को धो रहा है।

ए एक बाज़ार है उस बाज़ार में मिरच्या गिरी हुई है और एक --

ये एक रात का फिउस है और--

बिडिंगो पे लाइटिंग चमक रही है और ये बहोत ही सुंदर है ये रात--

भजन चल रहा है जिसमे दो तीन महाराज भजन गा रहे है।